यहां एक-दो मजदूर अपने सीलिंग को सीलिंग को नजर आ रहे हैं। जो दोनों ने कुछ लाल जोसे जैकेट पहने हुए और पीला हेलमेट लगाए हुए हैं।

बगैरा लगी हुई हैं जिसके आइट साइड में चार ठो पिलर लगाए दी दिए गए हैं और आसमान दिख रहा है। ये दिन का समय है। धूप निकली --

यह एक हॉल दिख रहा है जिसमे एक महिला चेयर में बैठी हुई है और कुछ महिला राइट साइड खड़ी हैं और --

--और हाथ मे मोबाईल लिए हुए सिर मे केप लगाए हुए उसके काउंटर मे एक काले कलर का कैलकुलेटर भी रखे हुए दिखाई दे रहा है काउंटर मे कुछ बुक वगेरा भी दिख रही है।

फूले लगे हुए नजर आ रहे हैं। सामने दो कटोरे स्टील के नजर आ रहे हैं और सामान रखे हुए --

साइड में कुछ छोटे-छोटे फूल के पौधे भी रखे हुए हैं और ये महिलाओं ने कुछ नीचे से एक थाली में कुछ समान रखे हुए हैं। ये पूजा यहाँ करती नजर आ रही हैं। पीछे में --

यह एक कॉपी पुस्तक की दुकान है जहाँ एक व्यक्ति सेटिंग करे स्टूल में बैठे हुए नजर आ रहा है जो ब्लैक कलर का चश्मा लगाए हुए है।

दाधि बनाते नजर आ रहा है सामने मे दो आयने लगे हुए है पीछे मे कुछ ओर समान रखे हुआ नजर आ--